ये कोई रिजॉर्ट या कोई पैलेस है।

पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर पर हमें एक सुंदर सी व्हाइट कलर --

की कार्ड दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर पर हमें एक बड़ा सारा--

वहां पर एक झूले पर एक चेयर सी लगी हुई है और उस पर --

ट्रेन भी आती हुई दिखाई दे रही है।

पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स भी दिखाई--

और उन चेयर्स के सामने दो बड़ी बड़ी मिरर्स दिखाई दे रही हैं।

इस पिक्चर में हमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रे है।